इ चित्र का अनुसार यखमा जी हमथे एक छोट्टु शा कु मंदिर कर छ दिखेण लग्यूं यखमा जी यु मंदिर जु छा यु ढुङ्गो को छ बणायु पठाल ची वाला ढुङ्गो कु छ बणायुँ।

चित्र का अनुसार यख मा जी जु छा हम ते एक रोड करा दिखेणी रोड का किनाराम एक बड़ी बारिकी इमारत करा।

चित्र का अनुसार यख मा जी जू छ हम त एक मकान कर छ दिखेण लग्युं यख मा जी यू मकान जू छ पठाली का कुड़ू छ यू पुराणु मकान छ।

यख मा जी कई सारा लाखड़ा का दरवाजा कर छ दिखेण लग्यां यख मा कुछ थोपरा करं दिखेणा ढूंगा करं दिखेणा यख मा जी कट्टा छन दिखेणा भुर्रा छन दिखेण लग्यां।